ये एक जैन मंदिर बौद्ध पोशाक का बोर्ड लगा हुआ है सामने बोर्ड लगा हुआ है।

ये एक ऑफिस का है जो की ब्लैक कलर की एक चेयर रखी हुई है कुर्सी रखी हुई है और डेस्कटॉप पर हमाम ब्लैक ब्लू कलर का जैसा बना हुआ है।

उम और बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ है। मॉल के बाहर गाड़ी खड़ी है कार खड़ी है।

और बाहर मे बहुत सारे लोग खड़े है और ये एक व्हाइट कलर का कृष्ण मंदिर है।

ये उम बड़ा सा एक मॉल है जहा की-जहा की बहोत --

और एक बाहर मे स्कूटी खड़ा है जो की ब्लू कलर का --